अअन तबला सारंगी है और एक एए --

डेकोरेशन में फूल लगाया हुआ है।

औऔर कुछ अअ कुछ सामान भी गिरे हुए हैं|

और बहुत बड़े-बड़े से चट्टानें भी है।